इनके बाहर बहोत लंबे लंबे पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रही है।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

प्लेट के ऊपर खाने को बहोत सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है।

पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा टावर भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी खड़ा होकर प्रोजेक्टर से कुछ समझाता हुआ भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक फूलों की दुकान दिखाई दे रही है।

घरों पे बोहोत सुंदर सुंदर रंग बिरंगा पेंट पुता हुआ नजर आ रहा है।